इन मछलियों को मछुआड़े ने पकड़ा है।

सादे कपडे में पंडित बैठे हैं उसके साथ लड़के के माता-पिता भी बैठे हैं।

यह एक बैंक का दृश्य हैं | बैंक का नाम अचडीएफसी बैंक --

दो लोग सीमेंट बना रहे है। एक लड़का उसे खड़े होकर देख रहा है उसके बगल में बालू रखा हुआ है।

ए टायर के पास गन्दगी को पोछ रहा है।